ठीक है और बाहर कुछ बाइके और एक्टिवा दिखाई दे रही हैं जो खड़ी है।

इस फोटो में दीवार सब लाल रंग की दिखाई दे रही है।

लड़ीया और फूल भी लगे हुए है।

ठीक है खिड़कियां है दिन का समय है।

और व्हाइट कलर की दीवार है नीचे फर्श पर टाइल लगी हुई है ब्राउन कलर की टाइलें लगी हैं।

यहां पर काफी सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं सफेद रंग के एक कार भी दिखाई दे रही है जो कि वाइट कलर की है।

फोटो ले रहा है सामने सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

दरवाजा व्हाइट कलर का है मशीन जो है वो ब्लैक कलर की है ये है ए_टी_एम मशीन ।

जिससे हम मनीजर विड्रा करते है पैसे निकालते है ठीक है।

ठीक है एक यहां पीछे अ जो है टी_वी रखा हुआ है स्विच बोर्ड है खिड़की है लिखा हुआ दीवार पे एस बोस --

ठीक है और यहां पर सारे लड़के ही है जो ये सारे लड़के यहां पर योगा आसन कर रहे हैं।

इस फोटो में चेयर्स दिखाई दे रही हैं फर्श पर पत्थर डला है।

अब इस फोटो में देखो दीवार जो है वो बिल्कुल सफेद रंग की है चेयर्स लगी हुई है यहां पर।

इस फोटो में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है बड़ी सी बिल्डिंग है।

जो यहां पर मैड्रिक्स के शैंपू दिखाई दे रहे हैं क्रीम्स दिख रही है ठीक है और यहां पर--

अब इस फोटो में काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जीने काट रखा काट दिया ठीक है ये बहोत मतलब गलत है जैसे जंगल खत्म करेंगे तो जानवर भी परेशान होयेंगे।

ठीक है एक यहा पे कैरेट दिख रही है यहां पे हरे रंग की।